कितना सुंदर दृश्य है एक दो तीन पहाड़ है और पानी और बादलों में पिंक पिंक कलर दिखाई दे रहा है।

और ये बाहर से तो अजीब सा लग रहा है। कुछ बट एक अन्दर आदमी खड़ा है। जिसने ग्रीन टीशर्ट पहनी है और इसका --

फेमस छोले भटूरे ठीक है मतलब ये जो छोले भटूरे हैं ये फेमस हैं लेकिन दुकान की हालत ठीक नहीं लगती।

खैर हमें इससे क्या लेना देना एक अंकल ऑरेंज सा कुछ शर्ट वगेरा पहनकर खड़े हुए हैं पन्ना ऊपर --